कौन है नारियल का पेड़ है तीन थला मकान है आगे में एक बोर्ड टांगा हुआ है बगल मे एक पोल गाड़ा हुआ है देखने में बढ़िया लग रहा है ।

बहुत बढ़िया लग रहा है देखने मे।